हम देख सकते है एक पेच इमारत है इमारत में लाइट जल रही है देखिए हमें कुछ और भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है स्ट्रीट लाइटें दिखाई दे रही है सामने से रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ और भी लोग है जो की एक बस के अंदर खड़े हुए है कुछ बहार बैठे हुए है।